और सिंटेक्स भी दिखाई दे रहा है।

इसमें डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेने का नंबर दिया हुआ है।

पर उस तरफ में जो है गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

और नीचे में सामान रखा हुआ है।

और उसका सामने में उस जंगल में दिखाई दे रहा है।

और लाइट जलाते हुए भी दिखाई दिया।

एक आरी में सीलिंग में लाइट लगा हुआ है।

एक कोकाकोला बॉक्स में भी है।

एक घर है ये सुंदर सा घर है।

और ऊपर में एक बिंदु भी दिखाई दे रहा है ऊपर में--

इसमें एक रेक बनाके है वो लोहा आला ।

ये गाड़ी दिखाई दे रहा है।

और यह दुकान सुकान भी उस में भी है।

और चारों साइड मे जो है चेयर है।

स्कूल में बच्चा लोग बैठा हुआ है बेंच में।

पिछे साइड में जो है जॉली लगा के है।

इस जगह में पूरा लाइट के साथ में ऊपर से लाइट जला हुआ है और नीचे से पानी फ्लो हो के है।

कपरा का दुकान है।

ये स्कूल लग रहा है।

और बरामदा में भी दो आदमी दिखाई दे रहा है।

और नीचे में घर भी बहुत बड़ा वाला दिखाई दे रहा है।

और ये सोलर प्लेट भी लगाके है साइड में।